और ये पुल दिख रहा है जो की काफी ज्यादा लंबा पुल है और उसके पर एक कवाड़ी वाला अपना एक आदमी दिखाई दे रहा है पुल के पास और यहाँ पे साइकल भी है और ये कबाड़ी वाला अपना देख रहा है देखने में काफी ज्यादा --

एक बाइक दिख रहा है बाइक पर एक लड़का भी बिठा हुआ है| दिखने में काफी ज्यादा सुन्दर लग रही लड़की से --

ते मकान है जो कि ये दुकान सब है और साइकिल सब बहुत सारा लगा हुआ है और उस साइड भी दुकान है गोलघर दिखाई दे रहा है साइड में हरा-भरा वृक्ष भी दिख रहा है देखने में काफी ज्यादा सुंदर --

यहाँ पर बहुत सारा लड़की और महिलाये यहाँ पर बेथ के कर रही है योगा कर रही है जो की देखने मे काफी ज्यादा सुन्दर लग रही है।

और उसमे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है बहुत सारा लाइट ऐ.सी. लगा हुआ है और देखने में काफी ज्यादा सुन्दर लग रहा है बहुत ही बेहतरीन से देखने में --

और यह सोफा चार्ज भी होता है चारों और यह रूम में मकान में है पंखा लगा हुआ है ए.सी लगा हुआ है और बल्ब लगा हुआ है सीसा भी लगा हुआ है